--और एक स्कूटी और एक ऑटो जिसमें दो लोग ऑटो को रिपेयर कर रहे हैं और बस इतना ही।

ये एक पॉपरेन मशीन है।

यह रेलवे स्टेशन भी हो सकता है जिसमें की एक-दो ओटो हैं एक बस है कुछ लोग खड़े हैं चाय की केप ठेला लगा हुआ है।

--और आगे एक बाउंड्री है और कुछ पेड़-पौधे लगे हैं ऊपर से बिजली की तार गयी हुई है।

यह एक लड़की की तस्वीर है जो की कोई डांस का स्टेप कर रही है ।

ये एक हॉल है जिसमे टाइल्स लगे हुए है ।

खाली मैदान की तस्वीर है जिसमे कुछ कचरा फेका हुआ है ।

ये एक स्कूल या कॉलेज का मैंन गेट का तस्वीर है जिसमे की प्रवेश निषेध लिखा हुआ है आगे सिक्कड़ से गेट बांधा हुआ है ।